पहाड़ है यह पहाड़ काफी बड़ी है इस पहाड़ में बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी है यह पहाड़ के बीचो-बीच झरना भी बह रही है यह झरना बहुत गह नीचे से नीचे की ओर बह रही है।